कई काले रंग के कई ऑरेंज और कई सफेद रंग के कप --

और आस पास कई सारे बलून ल--

यह एक वैन है आस पास पेड़ लगे हैं और घर ब--

जहां पर कई सारी मुर्गियां रखी हुई--

सामने बेड रखा हुआ है जीसके आस पास ग्रे कलर की कुशनिंग की हुई है ऊपर ऑरेंज रंग की दो लकड़ी के कंपार्टमेंट बने हुए हैं।

पीछे मौसम थोड़ा अच्छा है आसपास कई सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे पौधे पेड़ ल--

मैदान में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लगी हुई है।

और आस पास येलो और सफेद रंग की टाइल लगी हुई--

टेबल लगा हुआ है और एक लड़का बैठा हुआ--

कई लोग इकट्ठे खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं ग्राउंड में कुछ लोग दौड़ लगा रहे हैं बाहर कई लोग खड़े हैं।